लेडीज जेंट्स सब है और यहां--

में एक आद दो आदमी--

और इसका झालर तो इतना सुंदर दिख रहा है इतना सुंदर में क्या बताऊं।

यहां पे एक ऐसा ऑफिस दिख रहा है जिसमें बहुत सारे--

ये बहुत सारे पेड़े दिखाई दे रहे हैं जैसे लग रहा है यहां--

इस का इतना सुंदर पेंटिंग दिख रहा है और एक यहां--

इसका जो इसमें आदमी है वो पीले कलर का टी शर्ट पहना है और इस--

का सब दिख रहे हैं कोई लाल कोई हरा कोई नीला हर कल--

एक भवन दिख रहा है जिसमें बहोत सारे आदमीया खड़े है और इसमें बहोत सारे लाइटें लगे --